पास में एक सौर ऊर्जा का प्लेट लगा हुआ है जिसमें बल्ब भी लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं की यहाँ एक नेट बांधा गया है जहाँ की वॉली बाल का कोट बनाया गया है।

तथा कुछ तार के पौधे भी देखे जा सकते हैं। यहां पे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा हैं लेकिन यहां पे बोहोत जादा हरियाली है और बोहोत सारे पौधे लगे हुए हैं।